ऊपर जो है आसमान दिख रहा है नीचे जो है ग्रीन कलर की जो ही बसे दिख रही है एक अंकल जो हैऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे नीचे जो है धुल जैसे जमीन दिख रही है।

इस पिक्चर में जो है ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे जो है काफी सारे पेड़-पौधे दिख रहे है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है एक लड़का है जो अपनी फोटोज़ क्लिक कर रहा है।

छोटे छोटे बड़े बड़े काफी सारे जो है दुकाने दिखाई है एक जो हैं टैक्सी दिख रही हैं उसमें जो है दो तीन लोग दिख रहे हैं एक रोड दिख रहा।

नीचे जो है काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं एक्स-मस ट्री वाले भी पेड़ लगे हुए हैं क्रिसमस ट्री लगे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं।

काफी सारे जो है पेड़ दिख रहे है दो तीन कुछ लोग खड़े नजर आ रहे है आते-जाते---